यहाँ एक बड़ा-सा तलाव है तलाव के बगल में पेड़ है थोड़ा दूर मे एक मंदिर दिख रहा है जिसका रंग ऑरेंज है।